पास में ही कुत्ते बिल्लियों का कुछ सामान भी लटका हुआ है।

गोल-गोल चक्के दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ जाल वाले दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

जो की एक मशीनरी इंजन है।

जिसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बाह्य रोगी विभाग लिखा हुआ है।

बैटरी वाली रिक्सा खड़ी है।

मिनी मेट्रो के हैंडल पर है।

कुछ ट्यूब भी दिखाई दे रही हैं।

पीछे खड़े हुए कुछ व्यक्ति और दिखाई दे रहे हैं जोकि तिरपाल के नीचे खड़े हैं।

पीछे एक आदमी साइकिल से जा रहा है।

पीछे कुछ स्टूल दिख रहे हैं।

और कुछ पानी के ड्रम दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक रजवाड़ा फार्म लिखा हुआ है।

र एक स्टेडियम में बड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है।

फोटो में सामने एक आश्रम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो सामने बे एक ढ़ाबा दिख रहा है।

नीचे एक शटर लगा हुआ है।

इस फोटो में सामने कुछ कैच अप --

कुछ अचार रखे हुए हैं।

इसमें कुछ जूस भी हैं नीचे की तरफ कुछ जूस दिख रहे हैं।

आदमी के पीछे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें कुछ समान रखा हुआ है।

और लोहे की ग्रिल दिखाई दे रही है।

इसने कोट पैंट और ऊपर टोपी लगा रखी है।

नीचे रखा हुआ कीबोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक झुमर लगा हुआ है।

इस फोटो में सामने कुछ पौधे दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

इस पर सी_एन_जी लिखा हुआ है।

एक मूर्ति रखी हुई है।

नीचे एक लड़का और एक आदमी बैठा हुआ है।

दूसरे रूम में एक रखी हुई बॉटल भी दिखाई --

जिस पर कुछ पर्दे लटके हुए हैं।

नीचे कुछ लाइटें लगी हुई हैं जो कि रंग बिरंगी जल रही हैं।